पीछे की तरफ हरा बहा भरा पहाड़ी इलाका दिख रहा है।

ये फोटो में हमको बहोत सारा मेरीगोल्ड दिखाई दे रहा है।

राइट साइड में एक काउंटर है जिसके ऊपर पानी का बोटल रखा हुआ है।

दो लोग काम करते हुए दिख रहे हैं टेबल के सामने।

इस फोटो में वाइट पिलर दिखाई दे रहा है व्हाइट पिलर का आगे बहुत सारा बाइक दिखाई दे रहा है लाल काला कलर का।

इस तस्वीर में मुझे एक बहुत लंबा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के राइट साइड में एक बहोत बरा पेर दिखाई दे रहा है बिल्डिंग के आगे एक बहोत बरा ओपन फील्ड है।

बच्चों का बैग उनकी बेंचेस या नीचे दिख रहा है।

एक आदमी और एक छोटी लड़की शिवलिंग के सामने खड़े हुए हैं।

सेंट्रल शेल्फ में नमकीन बिस्कुट नूडल्स अच्छे से अरेंज किया गया है।

सेंटर शेल्फ के ऊपर कुछ पैकेज फूड और हॉर्लिक्स का बोतल दिखाई दे रहा है।

राइट साइड के सेल्फ पर कुछ डेली यूज आइटम रखे हुए हैं।

दरवाजा में अलग अलग कलर का कर्टन लगा हुआ है।

इस तस्वीर में पिंग और सफेद कलर की एक ऊंची बिल्डिंग दिख रही है।

आसमान में हल्का बादल है।

फोटो के मिडल में एक ओपन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर का अंदर बहुत सारे टेबल और बेंचेज है।

ये फोटो में मशीन के पीछे बहुत सारा इंसान दिखाई दे रहा है।

ऊपर दो ट्यूबलाइट जलते हुए नजर आ रहा है दीवार का कलर येलोइश है।

दाएं तरफ प्लाई के वॉल पे एक कैलेंडर लटका हुआ है।

दीवारों का रंग नीला हरा है ऊपर सीलिंग में एक काला पंखा दिख रहा है।

बोलेरो का आगे में एक ठो टीना वाला घर बनाया वाला दिखाइ दे रहा है।

बहुत सारे स्लिप है जहां पे अलग अलग सामान रखा है।

ऊपर आसमान में बहुत सारे सफेद सफेद बादल दिखाई दे रहा है।

टेबल पर फूलों की माला कुछ गिफ्ट्स और कागज की फाइल्स रखे हुए हैं।

लाल रंग की प्लास्टिक चेयर भी नजर आ रही है।

पीछे सफेद प्लास्टिक की बोरी में पीला फूल दिख रहा है।